हैलो गाइज हमें इन फोटो में देख सकते हैं काफी मछलियां नजर--

एक मेज के ऊपर प्रोजेक्टर लगा रखा है जिससे दीवार पे शायद ही ना कोई योगा करता दिखाई दे रहा उसने देखे ये योगा कर--

और इस फोटो में हम देख सकते हैं यह कोई मैकेनिक की दुकान दिखाई दे रही है। जहां पर ओईल वगैराह और काफी--

पहले चोटी फिर उसते बड्डी फिर उसते भी बड्डी मंडी सी बनरही है फिर उसक साइड मे एक ओर है।

यो देख सके हैं हम एक हॉल रूम की तरह ये नजर आ रहा है।

तो इस फोटो में हम देख सके हैं ये कोई बाजार का एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर आप देख सकूं--

और ई रिक्शा वाली भी है और एक कचना कुछ है मंदिर-मस्जिद शादी का शायद पता नहीं क्या यह मस्जिद है या मंदिर है और यहां पर भी कर--

इस फोटो मे देख सके कोई वाटिका वगैरा दिखाई दे रही है अंदरु जिसकी बाउंड्री पर रखी है।

काफी सजावटे काफी पेड़ पौधे हैं लैंप वगैरा लगी हुई है।

जहां पर आप देख सकते हैं इन बैगों का वेट लिखा हुआ पंद्रह के_जी दस के_जी --

पूरे दो के ऊपर लिखा हुआ है और ये सीढ़ियां वगैरा बनी हुई है।

इस फोटो में देखने से पता चल रहा हैं शायद ये कोई डिस्को बार वगैरा है जहां पर--

बाइक है जिसके ऊपर कवर और पेन आ रखा है और उसके ऊपर एक शर्ट रखीं है साइड में खेत वगैरा नजर --

और एक साइक्लिंग मशीन रखी हुई है अंदर आप देख सकते हैं।

इस फोटो मे हम यहां देख सके है ये दुकान सी बन रहीं हैं दो एक दुकान है।

इस फोटो मे हम देख सकते है शायद कोई घर वगैरा यहां पर बन रहा है जहां पर मजदूर काम कर रहे हैं।

पाइप दिखाई दे रहा काफी मिट्टी वगैरह पड़ी है और छोटे छोटे पत्थर हैं ईंटे हैं काफी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आप लोग देख सकती है एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आ रही है इसमें--